वहाँ पे एक वो बोटलियाँ रखे हुए जो हैं ड्रावर है वहाँ पे एक लाइट्स चालू है।

मूर्ति दिख रही है वहाँ पे स्टेज सजाया गया है। जो पत्तों से सजाया गया है फूलों की माला लगाई गई है।

दिख रहा है उसमें व्हाइट कलर की कार दिख रही है वहां पर कुछ लोहे का सामान पड़ा हुआ दिख रहा है | लाल कलर का मशीन दिख रहा है | एक आदमी के हाथ में ड्रिल का मशीन है वो कुछ चलाता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे जो है एक दिन का समय दिख रहा है।

वहां पर एक जो है अअ सनराइज दिन का समय दिख रहा है।